ऊपर एक छत कपड़े भी टंगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमें |

बगल में एक रुमाल और एक चश्मे दिखाई दे रहा है बगल में एक और लड़का भी दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर दो लड़का एक लड़की और दिखाई दे रही है हमें।

दिखाई दे रही है गाड़ी दिखाई दे रहा है |

जो की पीले रंग का और लाल रंग का हमें दिखाई दे रहा है |